ये एक चट्टानी इलाका है मतलब चट्टान के साथ फोटो लिया गया है चट्टान का छोटे छोटे ग्रीन्स टाइप के पोधा लग रहे है बहुत सारे साइड मे भी चट्टान दिख रही हैं एक बड़ी सी--

--टाइप का है मतलब पार्क ही है उसके साइड मे एक छोटा सा गेट दिख रहा है बीच मे एक बड़ा सा गेट भी है और उसके अंदर बहुत पेड़ पौधे भी लगे है।

इसमे कुछ पहाड़ दिख रहे है जंगल टाइप का दिख रहा मतलब पानी भी भरा है बीच मे गड्डों मे ट्रिस दिख रहे है।

वो फर्श पर स्टार बना हुआ है वो दिख रहा है रेलिंग दिख रही है जीने दिख रहा हैं वो बहुत सारे पोस्टर लगे है लाइटे दिख रही है फोकस लाइट लगी हुई है बहुत सारे इसमे सोफ़ा दिख रहा हैं ।

एक डोर है डोर पे कुछ बना हुआ है लेडीज़ या जेन्स उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सामने विंडो दिख रही है एक दो विंडो खुली हुई है एक दो विंडो बंद है और इस साइड भी एक दो विंडो --

ये एक मस्जिद दिख रही है इसके बाहर क्या कहते हैं एक आउटडोर रखा हुआ है ऐसे ही मतलब इसके बाहर पेड़-पौधे हैं बहुत सारे--

और इसकी दो गुंबद दिख रहे है और उसके साइड में एक घर दिख रहा है पिंक कलर का उसके अंदर गिलास लगा है सामने और उसके ऊपर भी छत डली--